ग्रीन कलर का स्वेटर भी लगा हुआ है यहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है।

यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी बने हुए हैं और यहां डिजाइनर कटाई की गई है घास भी बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही है।

यहां पे बहोत सारे माचें हैं जिसमे एक पे कोई सो रहा है बाकी सारे खाली हैं।

लंबी-लंबी पासबुक बड़ी पासबुक छोटी पासबुक छोटी क्लास बड़ी क्लास के सारा सामान मिलता है।

जो है वहां पे बहोत सारे लोग घास पे बैठे हुए हैं पेड़ पौधे भी आसपास दिखाई दे रहे हैं।

यह एक टिकट है यहां रेलवे स्टेशन है यहां से लोग टिकट खरीदते हैं ट्रेन के।

यह एक शादी की फोटो हैं।

यहां पे बहुत सारे झरने हैं जो यहां पे आराम कर रहे हैं कुछ घास पे बैठे हैं धूप लगा रहे हैं जॉगिंग कर रहे हैं।

इसने ब्ल्यू कलर के कपड़े पेहन रखे हैं और यहां ब्ल्यू कलर का ही पहाड़ बना हुआ है जिसपे ये फोटो खिंचवा रहा है जिस चौके पे ये बैठा है।

यहां एक झूला बना हुआ है यहां आसमान भी बहोत साफ सुथरा दिख रहा है यहां बहोत सारे झूले पे बैठे हुए हैं।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

यहां पे बहोत सारे लोग जहां आते हैं जो यहां रह सकते हैं खा पी सकते हैं यहां पैसे नहीं लगते हैं।